यह एक परचून की दुकान है यहां पे आलू चिप्स बर्गर चाऊमीन और यहां पे चिप्स भी मिलती है।

यहां पे बहोत लाउड म्यूजिक और चल रहा है डांस चल रहा है बहोत भीड़ भी हो रही है यहां पे --

यह एक रेस्टोरेंट की फोटो यहां पे ब्लैक और रेड कलर की चेयर लगी हुई है।

यहां पे छोटे बच्चों की कुरकुरे चिप्स चाऊमीन बर्गर पिज़्ज़ा इनका सामान भी मिलता है बनाने के लिए मैगी भी है।

और ये फोटो बहुत दूर से ली गई है तो बच्चे एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं।

मिट्टी भी भरी हुई है और बिच में एक साफ सुथरी जगह सी दिख रही है जो ऐसा लग रहा है जैसे सडक था।

यहां पे पेड़-पौधे लगे हुए हैं जिनमें लाइट फिट की हुई है तो ये रात होती है तो यहां पर लाइटें जलाई जाती है जो बहुत सुंदर दिखाई देता है।

झलरिया लगी हुई है और यहां पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं साथ में कुंडी बनाई गई है जहां से जानवर और पानी पी सकते हैं।

और यहां आसपास कोई और नहीं दिखाई दे रहा एक लेडर लगा हुआ है पास में।

यह देशमोक है यहां बीकानेर के अंदर आता है यहां पे बुखारनी माता का मंदिर है और यहां पे बहोत सारे --

ट्रेनें निकलती हैं यह पटरी है और यहां पे एक हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं और पास में एक सड़क भी दिखाई दे रही है।

येह नाइटी नाइन वाले शॉप है यह बीकानेर के अंदर है जसुसर गेट पे दाऊजी मंदिर पे और --

और यहां पे बैग गलीचे बिछे हुए हैं।

राशन पानी का समान तक मिलता है यहां पे लोग खाने पीने की चीजें लेने आ रहे हैं एक लड़के के हाथ में दूध भी ले रखा है।

जैसे लग रहा है कि अभी बलवान जिस बारिश होने वाली है पेड़ पौधे भी लग रहे हैं और यहां --